जिसमे हैंगर में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

इसके अंदर जाने के लिए बहुत सारे सीढ़ियां बना हुआ है।

उसी के बाहर एक साइकल है और दो सर्कल बना हुआ है।

इस फोटो में एक कमरा है जिसमें एक लड़की है वह पीला कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

यहा पर एक बगल मे एक फ्रिज है जिसमे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक भी है।

जिसमें बहुत सारे सामान रखें हुए हैं।